इसमें तीन कटोरिया दो चम्म --

इस दृश्य में एक हरे रंग का मकान दिखायी दे रहा है और नीचे --

मेंझ है खुर्सी है मेंझ पर --

कमरे में कुछ चीजे साफ और कुछ धुंदलि नज़र आ रही है।

ई दृश्य में तो बड़ा सा पानी का पोल्ल नज़र आ रहा है पानी काफी हरा दिखायी दे रहा है।

उसके अंदर से पाणी की फुहारे गीर रह है इस के अगल बगल लोहे के घेराव की --

नीचे दरवाज खिडकी भी दिख रहा है और कई सामान भी है।

इस दृश्य में तो पानी-पानी नजर आ रहा है पानी में --

इस पे तीन प्रकार की रस्सियां रखी गई हैं।

इस दृश्य में तो काफी बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है इसमें बड़े-बड़े बल्ब जल रहे हैं।

इस दृश्य में हरे रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उस पे --

यह मैदान में हरी हरी घास भी दिखयी दे रही है कुर्सीया इधर उदर फेली हुई है कई लोग ऊसपे नज़र आ रहे है।

जानवर दिखने में तो दर्यायी घोड़े के जैसे लग रहे है।

इसमें सुंदर-सुंदर फूल नजर आ रहे हैं घर में रोशनदान खिड़की और अंदर जाने के लिए बड़ा सा रास्ता है।

ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए फलों को रखा गया है।

इस दृश्य में तो काफी बड़ा सा हरे रंग का घर दिखाई दे रहा है काफी पुराना लग रहा है ये।

बडी आकार बनाये गए है और अच्छे भी लग रहे है।

इसमें छोटे-छोटे बल्ब के कई झालर लटक रहे हैं इसको काफी खूबसूरती से सजाया गया है।

पानी भी साफ-साफ ही नजर आ रहा है।

ऊपर बादल आसमान और उसके बीच में सूरज की किरणें भी नजर आ रही है।

और इसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड नज़र आ रहे है।

गलियारे में बहुत सारे बच्चे बैठे है।

इस दृश्य में कइ छोटे बड़े कच्चे पक्के घर --

बड़े-बड़े खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस में लाल रंग की एक बड़ी सी चटाई भी बिछी है।

उनके पीछे कई छोटी बड़ी अलमारियां हैं।

बल्ब नजर आ रहे हैं जो जल रहे हैं।

और सामने बहुत सारे लंबी पतली मोटी हरी हरी पेड दिखायी दे रहे है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा गलियारा दिखायी दे रहा है।

और चादर पर बहुत सारी मछलिया रखी गयि है।

हरे भरे बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

पेडो की छाया भी नज़र आ रही है।

बड़े पौधे पेड सब दिखायी दे रहा है पानी भी खूब सुन्दर लग रह है।

दृश्य में एक हल्के नीले रंग का मकान दिखाई दे रहा है।

इसके अगल बगल बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं यह किसी बैंक का दृश्य --

इस डिश में एक बहुत बड़ा सा तीन चार मंजिलो का पानी का जाहज है उसके बगल में एक नाव भी है।

इसके सामने शीसा लगा है सीसे के अंदर दो तीन लोग बैठे हुए नज़र आ रहे है।

इस दॄश्य में दोनों तरफ मकान दिखायी दे रहा है और बीच में रास्ता है इसके दोनों तरफ --

इस दृश्य में एक टूटफूटा घर दिखयी दे रहा है घर के ऊपर का छप्पर टुटा हुआ नज़र आ रहा है इसमें नीचे कई जगह --

कपडे रखे हुए है सामने सुखी मिट्टी और हरी हरी घास भी दिखायी दे रही है पीछे हरे हरे पेड भी नज़र आ रहा है।

इस द्रिश्य में बीच में दो मूर्तिया नज़र आ रही है मूर्तियों के दोनों तरफ --

इस दृश्य में खम्बो के ऊपर बड़े घर को बनाया गया है और इसमें कई खिड़किया और दरवाजे भी लगे है।

इसके आगे एक छोटा सा बगीच्या बना है इसमे हरे हरे पेड पौधे और छोटी छोटी घास भी नज़र आ रहि है।

यह किसी बडी नदी या तो समुन्द्र का द्रुश्य है इसके ऊपर कई मंजिलोवाला बड़ा सा पानी का जहाज है।

जहाज के ऊपर दो चिमनिया लगी है इसमेंसे धुए निकल रहे है जहाज में बहुत सारी छोटी छोटी खिडकीया और दरवाजे नजर आ रहा है।